और उसके चारों तरफ बहोत सारे पेपर रखे हुए--

सामने एक व्यक्ति बैठा हुआ है उसने वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई है।

रिक्शा भी खड़ी है नीले कलर --

दो व्यक्ति के हाथ में बड़े से डंडे में आग लगी हुई है।

कुछ पर्दों का कलर पीला और कुछ का हरा है। नीचे दो व्यक्ति खड़े हैं।

बड़ा सा एक खेत है।

अधिक मात्रा में सिल्वर कलर की बैठने के लिए चेयर रखी हुई हैं।

सामने ब्लैक कलर का एक बड़ा सा गेट लगा हुआ है उसके पीछे वाइट कलर की कार खड़ी हुई है।

साइड में कुछ महिला और एक जेंट्स है जेंट्स ने रेड कलर की शर्ट पहनी हुई है।

साइड में व्हाइट कलर का हैंड वॉश लगा हुआ है ऊपर कुछ लाइटें भी लगी हुई है।

नीचे एक दुकान है दुकान पर कुछ जेंट्स वे कुछ महिलाएं--

दुकान की साइड में एक सीढ़ी रखी हुई है।

कुछ मशीनें भी रखी हुई है ऊपर एक फैन लगा हुआ है।

ये सिल्वर कलर की ग्रील लगी हुई है सामने ब्लैक कलर का बड़ा सा शिशा लगा हुआ है उसमें बहुत सारी बाइक खड़ी हुई हैं।

कुछ पीले कलर के टेंपू खड़े हुए हैं और साइड में एक रेड कलर की छतरी लगी हुई है।